कुछ लोग जमा है और एक सक्स जो है वो--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

मै देख पा रही हु यहाँ पर एक सुनसान जगह है जहाँ पर एक लड़का ।

कुल्हड़ सजाये हुए है और काउंटर के बगल में --

मै देख पा रही हूँ की यहाँ पहाड़ी से नीचे देखने पर सिर्फ झाड़ और गहराई --

सारी ट्रैफिक लगी हुई है कहीं टेम्पो खड़े है कहीं बस खड़ी है बाकी क अम लोग पैदल खड़े हुए है ।

जैसा की मै देख पा रही हूँ यह एक मार्केट के जैसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर थोड़ी भीड़ जमा है।

कुछ लोग खेल रहे है। मैदान के किनारे-किनारे से पेड़ लगी हुई है।

और एक छोटी सी मकान के जैसी दिखाई दे रही है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर बहुत सारी औरते --

जहाँ पर एक लड़का खड़ा है और उसके आस-पास थोड़े बड़े-बड़े प पत्थर रखे हुए है ।